सामने एक मंदिर है जिसके ऊपर एक पेड़ है और मंदिर के दोनों गगुंबजो में एक-एक झंडे लगे हुए हैं।

यह एक कपड़ो की दुकान हैं जहाँ पर लड़को और आदमियों के बहुत सारे कोट्स टंगे हुए है और रेको पर बहुत सारे शर्ट् और पैन्ट रखे हुए हैं।

सामने एक पुतले पर कपड़े पेहनाए गए है और उसके पास में एक महिला दिखाई दे रही है।

सामने बहुत बड़ी-बड़ी फिसल पट्टियां है और स्विमिंग पूल्स में कुछ लड़के और लड़कियां नहा रहे है।